यहाँ पे जो कि देखिए पहाड़ है।

डबल जीरो जीरो सात --

देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि --

जोकि एक एक बहोत ही सुंदर --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

ये बैंक का नाम कोटक महिंद्रा बैंक है। देखिये और इसके बगल में --

बंधन बैंक है जोकि यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं --

यहाँ पे बगल में डी.जे भी लगा हुआ है।

देखिए इस रेलवे ट्रैक के बगल --

हर तरह की सुविधा हर तरह की --

और यहाँ पे बैठा हुआ है और एक पेड़ है। बहोत ही मोटा पेड़ है। देखिये उसके बगल में अजीब अजीब --

प्राइस में घर --

देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना अच्छा खूबसूरत जगा है जोकि गुफा जैसी जगह है।

देखिए जोकि हरा-भरा कितना हरा-भरा है। देखिए बीच मे पानी है --

जो कि काफी सुंदर है और देखिए पहाड़ भी है जो कि काफी --

यहाँ बहोत ही बच्चे लोग आते है। देखिये यहाँ पे एक बार में सौ डेढ़ सौ बच्चे पाए जाते है। यहाँ पे बहोत ही --

बहोत ही सुंदर गुफा है।